यह पिकअप वैन भाड़े में चलता है।

यहाँ पर बहुत से मरीज आते हैं।

यहा पर एक लड़का है। जिसके हाथ में एक कागज है। यहा पर बालो इट भी रखे हुए है। इस मैदान के किनारे एक बड़े घर भी है।

सड़क है इस सड़क पर बहुत सी गाड़ी आती जाती हैं।

यहाँ पर बहुत से आदमी भी आते-जाते हैं इस सड़क पर एक चार सौ सात खड़ी है ।

इस चार सौ सात में बहुत से पैसेंजर जाते हैं इस सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ भी हैं |